अच्छे हैं और ग्रेप्स भी बहुत अच्छी सी--

यह भगवान के मंदिर की फोटो है जिसमें बहुत सारे फोटोस रखे हुए हैं।

को हुआ है अ दुकान पे आए हैं सामान लेने के लिए।

इ इंलाइटमेंट मे सब घु ढाके रखे हुए है।

ये एक होटल के फोटो है जिसका नाम होटल कैपिटल है।

में लाइटिंग बहोत अच्छी सी हो रही है।